यहां पे एक बिल्डिंग जैसी दिख रही है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे आई_आई_एम लखनऊ लिखा हुआ है और--

जे कुछ व्हाइट कलर के केन जैसे दिख रहे हैं और यहां सब बिस्किट वगैरा हैं।

यह एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पे कुर्सियां टेबल लगे हुए हैं।

बाहर जो छत पे येल्लो कलर का किया हुआ है औऱ ऊपर लाइटे वाइटे दिख रही--

इसको ऊपर से एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे वाइट कलर से एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ--

यहां पे एक अ एक दरिया की फोटो है जिसके इर्द गिर्द कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और ये घर की तस्वीर लग रही है जिसके बाहर अ कुछ बंदे योगा सीख रहे हैं।

और ये खाली ग्राउंड की फोटो पार्क जैसी लग रही है।

नीचे भी एक बोर्ड लगाया गया है। जिस पर साइ ब्लेस फार्मेसी लिखा हुआ है।

लकड़ी का काम भी किया हुआ है और साइड में कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही--

घर के बाहर साइड में दीवार के साथ एक पौधा भी लग रहा है।

साइड में अलमारी पे बहोत सारी चीजें रखी हुई जैसे खाने पीने की चीजें है।

यहां आइसक्रीम वगेरा रखते हैं और पीछे एक लड़की है।

अ ये एक समंदर की फोटो है और ये समंदर की किनारे पे बालकनी जैसी बनाई हुई है जैसे --

आगे का खुला मैदान जैसा है और वहां दीवार पर कुछ पोस्टर जैसा बनाया हुआ है जिसपे हिंदी में कुछ लिखा गया है।

यहाँ रेलवे पाथ की फोटो लग रही है जिसमें एक ट्रेन चल रही है।

इसमें हिंदी में रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है और नीचे चार पॉइंट्स में ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

कुछ खाने के समान बेचते हैं और वहां पे एक बंदा खड़ा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

नीचे ब्लैक और व्हाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं और साइड में वहां एक कुलर दिख रहा है।

छोटा छोटा घास आया है ये मुरझाया हुआ है और साइड में एक मकान दिख रहा है।